यह तस्वीर काफी अलग है।

यहां कुछ जला रहे हैं।

इसमें हरी भरी घास से भरा हुआ एक खेत--

और दोनों हाथों में भी जूते पहने हुए है यहां--

हेयर कट कराया है उसने नीले रंग की कमीज--

उनके पीछे बहोत से आ--

की है यहां पर बहोत सारे कमरे बने हु--

केक की दुकान की है इसमें--